इस दौर में ब्लू कलर की लाइट एलगी हुए है।

कुछ लड़कियां पीछे बैठी हुए हैं कुछ लड़कियां रंगोली बना रही हैं कुछ लड़कियां रंगे भर रही हैं।

इस तस्वीर में आर्टिफिशियल पत्ते फूल भी लगे हुए हैं।

इस तसदीर में खूब सुंदर बनावटी बनी हुई है।

इस तस्वीर मै एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है।

एकमहिला पीछे बैठे हुई हैं।

इस तस्दीर महिला लाल कलर की साड़ी पहनी --

एक साथ और दो पुरुष बगल में एक साथ खड़े हैं।

एक पीछे ईंटे की मकान।

इस तस्वीर में एक बनी बनाई बगल में बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में बिल्डिंग में काम चल रहा है।

इस तस्वीर में सारी प्रोडक्ट गर्ल्स की ही है।

इस तस्वीर में एक महिला है जो चकपड़ा देख रही है।

एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेशन के लिए सजी हुई है।

तीन ऐ_सी आ नज़र आ रही है इस तस्दीर मै रंग -बिरंगे बल्लूंस टंगे हुए है।

तरह-तरह की मुर्गियां भी हैं।

में एक पुरुष एक गाड़ी बना रहा है।

इस तस्वीर में एक गार्ड पीला कलर की टी-शर्ट मै है।

इस तस्वीर में एक पुरुष नजर आ रहा है।

और कच्ची ईट की मकान भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में एक साइकिल है।

जिस पर एक लाल कलर का टी-शर्ट पहने लड़का है इस तस्वीर में सभी एक दिशा में ही कुछ देख रहे हैं।

ये तस्वीर मॉल का है।

इस तस्वीर में लड़कियों के लिए जूते भी हैं।

इस तस्वीर में दो कुर्सियां नजर आ रही हैं इस तस्वीर में एक पोस्टर लगा हुआ है जो किसी महराजे का है।

इस तस्वीर में एक सोफा भी है।

इस तस्वीर में दो बड़ी-बड़ी आयना हैं।

इस तस्वीर में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष से बैठे नजर आ रहें हैं।

मॉल पे जाने के लिए लिफ्टें ही हैं।

इस फोर्थ में--

इस तस्वीर में किसको टोपी लगी है।

इस तस्वीर मै हरे भरे फूल पौधे भी नज़र आ रहे है।

यह तस्वीर डांस अकेडमी का है।

इसमें एक पुरुष नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर उम्म् ब्लू कलर का--

इस तस्वीर मैं ऑडियंस डांस स्टूडियो है।

इस तस्वीर में एक काली कलर की गाय है।

इस तस्वीर में दूसरी गाय आधा कटी नजर आ रही हैं।

नज़र आ रहा है य पर पूरे रंग बरंगे सजावटों से सजी हुई है।

यह तस्वीर गंगा घाट का नजर आ रहा है।

पोल ओ लाइट ए भी नज़र आ रही है ।

इस पेट्रोल पंप के पास एक टैब रखी हुई है।

बहुत सारी ट्रकें नजर आ रही है।

यह इसमें एक रेलवे ट्रक भी नजर रहा हैय--

इस तस्वीर में एक बाइक भी नजर आ रही है।

इस तसवीर में एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है।

कपड़े जो टंगे हैं वो बड़े से लोहे पे हैं।

दो छोटे बच्चे भी हैं कुछ ए _सी या भी हैं कुछ लाइट ए भी है।

इस तस्वीर में एक ग्रिल भी है।

इस पार्क में एक मूर्ति का।

इस तस्वीर में बड़े-बड़े पत्थर भी हैं।

तेरे शरीर में कुछ पत्थर के बहर भी हैं।

ये तस्वीर में एक कमरा है।

इस तस्वीर मे पुतले रंग बिरंगा है।

इस तस्वीर में काफी भीड़ इकट्ठा भी हुई हैं।

इस तस्वीर में तार के लपेटे भी हैं।

इस तस्वीर में एक मूर्ति भी है।

कमरे मे लाइट एलगी हुई है।

इस तस्वीर में गोल जैसा ग्लमव बनाया हुआ है--

इस तस्वीर में एक पाहु प्ल खड़ा है ।

ये तस्वीर एक ग्राउंड का लग रहा है।

नेट पे खिड़की लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक घडी भी है ।

इस तस्वीर मैं एक सेमिनार लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भी हैं।

इस तस्वीर में पुस्तक भंडार लगा हुआ है।

इस तस्वीर में सभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं।

तस्वीर में सभी यसडुओ के ओलुसं में है ।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी कटिंग हुई गयी है।

यह एक सिटी सेंटर सेलून है।

इस तस्वीर में एक पुरुष भीतर नजर आ रहा है।

इस तसवीर में बिल्डिंग जो हैसजा है।

इस तस्वीर में बिल्डिंग पूरी लाइट ओसे सजी हुई है।

इस तस्वीर में तीन चार बिल्डिंगे नजर आ रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारा भीड़ है।